रहता है। यहां पर बस का सफाई भी होता है।

बोत बड़ा सा प्लेग्राउंड भी हे । ये स्कूल एक प्राइवेट स्कूल है।

अच्छा है मट्टी का बना हुआ है इस गांव के लोग खेत खमाड़ी करते --

गाड़ी चलता है इसलिए इलाका का लॉक --

लड़के लोग खेलने के लिए आता हैं। इस बास्केट बॉल के चारों तरफ बहुत सारे पेड़ हैं।

ऐ हमारे इलाका का एक सड़क है इस सड़क के ऊपर --